पानी का फैन दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक सॉप दिखाई दे रही है।

मुझे यहां सोलर पावर सेंटर लिखा हुआ दिख--

मुझे यहां एक फोर व्हीलर दिखाई दे रही है।

दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

लाइब्रेरी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां कुछ वाहन दिखाई--

रूम दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक मार्केट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुझे ये यहां कुछ लोग दिख रहे हैं।